एक बड़ा सा टावर का लगा है।

रेलवे स्टेशन प ब कुर्सियां लगी हुई है रेलवे --

अभी उसका काम हो रहा है ओवर ब्रिज --

ज्यादा लाइट भी बर रहा--

ये एक रेलवे स्टेशन है जो रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज बना हुआ है।

ट्रेन खड़ी है और स्टेशन पर बहोत सारी लाइटें जल रही हैं और बहोत सारे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं।

कार है जो सफेद रंग का है और इसका एक्सीडेंट हुआ है जिसके आगे का पूरा पार्ट --